दिखाए गए तस्वीर में एक शॉपिंग मॉल नजर आ रहा है।

इस चित्र में डिगारु स्टेट डिस्पेंसरी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में कांच का खीड़की नजर आ रहा है।

दिखाए गए तस्वीर में पांच महिला नजर आ रहा है।

दिखाए गए चित्र में दूल्हा और दूल्हे को शादी करते हुए नजर आ रहा है।

दिखाई गए तस्वीर में लाल रंग की फुल दिख रही है।

दिखाए गए छबि में गुलाबी रंग का फूल दिख रही है।

इस दृश्य में खाने के लिए टेबल रखा हुआ है।

दिखाए गए तस्वीर में हमें भारत सेवा आश्रम संघ लिखा हुआ दिख रहा है।

दिखाए गए चित्र में बच्चों का खेलने की चीज नजर आ रहा है।

इस चित्र में बहुत सारा आदमी नजर आ रहा है।

दिखाए गए दृश्य में एक आदमी लाल रंग के टी शर्ट पहने हुए हैं।

इस दृश्य में हमें सफेद और गुलाबी रंग का कपड़ा से बना हुआ पेंडल दिख रहा है।

इस छवि में गुलाबी रंग का फूल नजर आ रहा है।

दिखाएं गए तस्वीर में हमें मिट्टी से बने हुए रास्ता नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में टीन का रंग नील नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक पक्षी पेर पर बैठे हुए दिख रहा है।

इस छवि में एक लाइट जलते हुए नजर आ रहा है।

दिखाए गए छवि में एक बैंक नजर आ रहा है।

इस चित्र में वेलकम लिखा हुआ नजर आ रहा है।

दिखाये गए तस्वीर में रोप लाइट नजर आ रहा है।

दिखाए गए चित्र में कागज से बने हुए सफेद रंग के बॉक्सस टेबल के ऊपर रखे हुए हैं।